जगह भी है उसके साइड में एक डस्टबिन भी है ।

बिल्डिंग हैं जिसमें शटर डाउन है और ये कम ऑन लिखा हुआ है दीवार पे।

और इधर पानी है झरना --

यह मिठाई पे हैं मार्केट एरिया और यहाँ से बहुत सारे ऑटो गुजर रहे हैं और कुछ व्यक्ति साइकिल पे जा रहे हैं और कुछ बाइक पे |

और मोटे लोग या फिर फिट लोग यहाँ पे दोढ़ते हैं रेगुलर जो उसके लिए लिमिट बना हुआ रहता हैं। आप यहाँ पे जितना स्पीड दौड़ना चाहिए आप दौड़ सकते हैं इस मशीन पे।